यह एक गार्डन है जिसमें कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं दौड़ते दिखाई दे रहे हैं सामने --

आसपास काफी लाइटे जल रही है ए_सी लगी हुई है।

जिसके आसपास काफी पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक घर दिखाई दे रहा है जिसमें एक स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

एक लोहे की जाल जैसा बना हुआ है और पेड़ पौधे लगे हैं दो आदमी खड़े हैं दिखाई दे रहे हैं आसपास काफी पेड़ पौधे और खंभ --

धूप दिखाई दे रही है दीवार पे पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे आसमान साफ है नीला दिखाई दे रहा है।